बहुत बड़ा सारा बिल्डिंग है और सामने की तरफ एक लोहे का गेट लगा हुआ ऊपर के तरफ जाली है साइड में पेड़ लगा हुआ है एक अ ऊपर की तरफ सूखा सा पेड़ है नीचे एक पेड़ का परछाई बहुत बड़ा सारा ग्राउंड हेंगा एक--

एक बड़ा सारा हॉल दूकान है उसके अंदर सामने के तरफ एक काउंटर है ऊपर बैलून लगे है ऑरेंज और वाइट और ग्रीन और ऊपर की तरफ लाइट्स लगी हुई है।

बहुत सारे डब्बे जमे हुए है नीचे की तरफ डब्बे अ-जमे हुए है छोटे शूज के और एक चेयर रखी हुई है।